इस चित्र में हमें बादल दिखाई दे रहे हैं बादलों से बहुत सारे हैं।

इस चित्र में हमें दुकानें दिखाई दे रही है जो कि बड़ी-बड़ी दुकाने हैं दुकानों में बहुत सारे सामान रखे गए है।

चित्र में हमे एक घर दिखाई दे रहा है जो की झोंपड़ी से बना हुआ है घर के हूं घर के अन घर के बाहर ----

उस साइड कोर इस साइड इस साइड ईंटें पड़ी हुई हैं। एक खंभा है जिसमें अलग अलग कलर से लिखा हुआ है। उस रोड के उस साइड एक पोस्टर है जिसमें भी लिखा है। रैक भी पड़ी है और ट --